उसपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे भारतीय स्टेट बैंक लिखा हुआ है।

शंकर सम्राट लिखा हुआ है।

ये देखने में किसी मेट्रो स्टेशन का लगता--

रोड के बीच में डिवाइडर बना हुआ है जिसमें दोनों तरफ लोहे की जाली लगी हुई है।

तरह का बना हुआ है।

यह अंबेडकर पार्क लगता है।

और नीचे एक बिल बोर्ड लगा हुआ--

यहां पर हरे हरे बड़े बड़े लगे हुए हैं।

यहां पर कुछ ढेर सारे हरे हरे पेड़ और पौधे दिख रहा है।

लोगों के सामने एक टेबल है जिसपे सफेद कपड़े से कवरिंग की गई है। उसपे कुछ मिठाइयां और फूल रखे हुए हैं।

बिल्डिंग पूरी पीली पीली चमकती हुई दिख रही है।

टेबल पर गुलदस्ता रखा हुआ--

यहां सामने दो चेयर दिख रही हैं।

लाल और हरे कलर के छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं।

यहां पर दो औरतें बैठी हुई है।

डेस्क के ऊपर शेल्फ बना है जिसपे किताबे रखी गई है।

इसके उपर एक बोर्ड है उस पे बहुत सारी लिखा गया है।

यह एक बोस कार सर्विस और उसपे कनक ऑटोमोबाइल्स लिखा हुआ है--

यहां बहोत ढ़ेर सारे लोग खड़े हैं और एक गाड़ी खड़ी है।

गार्डेन टाइप का बना है जिसमें छोटे बड़े पौधे लगे हुए हैं।

यह देखने में एक मंदिर लगता है।

जो की किसी रेलवे स्टेशन का--

ढेर सारे प्लेटफार्म बने हुए हैं।

यहां पर फुट ओवर ब्रिज पर ढेर सारी लाइटें लगी हुई हैं।

एक शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है।

यहां पर एक अमूल का बोर्ड लगा हुआ--

यहां पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

पिंक कलर का बोर्ड है उस पे निरुज लिखा हुआ है।

टेबल और चेयर रखा हुआ है जिसके ऊपर कुछ प्लेटस वगैरा हैं।

सजावट का काम कर रहा है दीवाल पर।

यहां पर मंदिर के दोनों साइड पे दरवाजे के गणेश जी और हनुमान जी बने हुए हैं।

यहां ढेर सारे श्रद्धालु खड़े हैं।

डेस्क का मतलब की टेबल रखे हुए हैं।

पोस्टर लगा हुआ है जिसपे कि खाने की आइटम बने हुए हैं।

यह देखने में किसी रेस्टोरेंट या कैफे का लगता है।

यहां पर ढ़ेर सारे स्विच बोर्ड है।

रोड के बगल में डिवाइडर बने हुए हैं जिस पे कि छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पीछे एक पीले कलर की बड़ी सी बिल्डिंग है।

जो देखने में किसी कार्यालय की तरह लगती है।

बगल में एक नया बन रहा हुआ घर है।

यहां पर कुछ लोग खड़े हैं।

मेन द्वार के अंदर छोटे छोटे द्वार और पीछे मंदिर छोटी सी मंदिर है जिसमें मूर्ति बनी हुई है।

कुछ लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं।

एक बोर्ड टंगा हुआ है जो कि काले कलर का है।

नीचे रजिस्ट्रेशन काउंटर लिखा हुआ है इंग्लिश में।

यहां पर तीन व्यक्ति खड़े है।

यहां पर इस फर्श पर टाइल्स लगी हुई हैं।

यहां पर ढेर सारे परदे लगे हुए हैं।

यहां पर एक बोर्ड है उसपे लेडीज लिखा हुआ हैं।

यहां पर ऊपर सफेद कलर की ट्यूबलाइटे लगी हुई हैं।

यहां पर फर्श पर टाइल्स लगी हुई हैं।